ई क़ुतुब मीनार चीसी ईमारत लग रही हे ।

ये वाइट न्यू कार है।

अ थमता हुआ आपको नजर आ रहा है।

और सारे बच्चे खुशहाल दिखाई दे रहे हे।

और इस ऑफिस में सभी लोग डिसकस कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में।

और बहोत ही साफ सुथरा फर्स है।

ये अंबुजा सीमेंट की सौप है।

हमारा राष्ट्रधव्ज तिरंगा लेहरा हुआ है।

जिसमे एक तीन महिला भागीदार है पार्टिसिपेट कर रही है।

यह प्रकृतिक वातावरण नैचरल वातावरण रिसोर्ट का --

और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं।

यह जीवन की एक तस्वीर हे ।